ये एक वाटरफॉल है और यहां पर पानी बहुत तेजी से गिर रहा है पानी बहुत ही साफ है और बड़े-बड़े पत्थर है।

और आसमान हम देख सकते हैं सफेद है।